लिबर ऑफिस कैल्क में एडवांस्ड फ़ॉर्मेटिंग और सुरक्षा प्रोटेक्शन पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे पासवर्ड एक स्प्रेडशीट की सुरक्षा करता है पासवर्ड एक स्प्रेडशीट में एक अकेली शीट या एक टैब की सुरक्षा करता है
डेटाबेस के लिए रेंज निर्धारित करें
सब टोटल ऑप्शन का इस्तेमाल करें
सेल्स को वैलिडेट करें
यहाँ हम उबंटू लिनक्स वर्जन 1004 और लिबर ऑफिस सूट वर्ज़न 334 इस्तेमाल कर रहे हैं
personal finance trackerओडीएस खोलें
सबसे पहले इस फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करना सीखते हैं
यह ऑप्शन सुनिश्चित करता है कि केवल वह लोग जो पासवर्ड जानते हैं इस फाइल को खोल सकते हैं
मुख्य मेन्यू से फाइल और सेव एएस पर क्लिक करें
सेव डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
अगला सेव विथ पासवर्ड बॉक्स को चेक करें
फिर सेव पर क्लिक करें
जैसा कि हम सेव एएस ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसे अन्य फाइल के रूप में या उसी फाइल के बदले सेव कर सकते हैं
यहाँ इस फाइल को बदलें
येस पर क्लिक करें
फिर पासवर्ड प्रविष्ट करें
और कन्फर्म बॉक्स में भी फिर से पासवर्ड प्रविष्ट करें और ओक पर क्लिक करें
फिर personal finance trackerओडीएस फाइल को बंद करें
अब इस फाइल को फिर खोलें और देखें क्या होता है
Enter पासवर्ड डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
यहाँ गलत पासवर्ड प्रविष्ट करें
ओक पर क्लिक करें
हमें एक एरर सूचना मिली जो कहती है कि पासवर्ड इस इनकरेक्ट
अब सही पासवर्ड टाइप करें
फाइल खुलती है
हम पासवर्ड ऑप्शन कैसे हटायेंगे
यह भी सरल है
हम सेव विथ पासवर्ड ऑप्शन को अनचेक करते हैं
फिर से जैसा कि हम सेव ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसे अन्य फाइल के रूप में या उसी फाइल के बदले सेव कर सकते हैं
यहाँ फाइल बदलें
येस पर क्लिक करें
इस फाइल को बंद करें और खोलें
इस फाइल को खोलने के लिए आपको पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है
सीखते हैं कि पासवर्ड इस फाइल से विशेष शीट्स को कैसे सुरक्षित करता है
मेन्यू बार से टूल्स प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट और शीट पर क्लिक करें
प्रोटेक्ट शीट डायलॉग प्रदर्शित होता है
शीट को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन्स सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स और सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स को अनचेक करें
अब पासवर्ड फील्ड में छोटे अक्षरों में एबीसी टाइप करें और कनफर्म फील्ड में पासवर्ड फिर से प्रविष्ट करें
ओक पर क्लिक करें
हम किसी भी सेल को चुनने में सक्षम नहीं हैं
शीट बदली नहीं जा सकती
किन्तु अन्य शीट्स का क्या
शीट2 पर क्लिक करें
एक सेल चुनें और उसे बदलने की कोशिश करें
कैल्क हमें अन्य शीट्स में सेल्स को बदलने की अनुमति देता है
पहली शीट में वापस जाएँ
अब शीट को असुरक्षित करें
यह सरल है
मेन्यू बार से टूल्स प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट और शीट पर क्लिक करें
एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है जो पासवर्ड मांगता है
इसमें छोटे अक्षरों में एबीसी प्रविष्ट करें और ओक पर क्लिक करें
हम सेल्स को फिर से चुनने में सक्षम हैं
रेंजेस के बारे में सीखें
आप एक स्प्रेडशीट में सेल्स की रेंज निर्धारित कर सकते हैं और उसे एक डेटाबेस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं
इस डेटाबेस में प्रत्येक रो एक डेटाबेस रिकॉर्ड के अनुरूप होती है और रो में प्रत्येक सेल एक डेटाबेस फील्ड के अनुरूप होती है
आप रेंज पर क्रमबद्ध वर्गीकरण खोजना और गणना कर सकते हैं जैसा कि आप किसी भी डेटाबेस में करते हैं
personal finance trackerओडीएस में डेटा निर्धारित करें और डेटा क्रमबद्ध करें
सबसे पहले डेटाबेस में जो चीज़ें हमें चाहिए उन्हें चुनें
शीर्षक स्न से अकाउंट तक सभी डेटा को एक साथ चुनें
हमने पहले ही सीखा है कि डेटा कैसे चुनें
अब अपने डेटाबेस को नाम दें
मेन्यू बार से दाता पर क्लिक करें और फिर डिफाइन रंगे पर क्लिक करें
नामे फील्ड में डीटीबीएस टाइप करें जोकि डेटाबेस का शॉर्ट फॉर्म है
ओक पर क्लिक करें
फिर से मेन्यू बार में दाता और सिलेक्ट रंगे पर क्लिक करें
ध्यान दें सिलेक्ट डेटाबेस रंगे डायलॉग बॉक्स जो प्रदर्शित होता है उसमें डेटाबेस के लिए नाम डीटीबीएस सूचीबद्ध है
ओक बटन पर क्लिक करें
अब इस डेटाबेस में डेटा क्रमबद्ध करें
मेन्यू बार से दाता और सोर्ट पर क्लिक करें
सोर्ट डायलॉग बॉक्स जो प्रदर्शित होता है उसमें सोर्ट बाय फील्ड पर क्लिक करें और स्न चुनें
अगला दायीं तरफ से डिसेंडिंग चुनें
पहले थेन बाय फील्ड के नीचे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और कॉस्ट चुनें
फिर से दायीं तरफ से डिसेंडिंग चुनें
दूसरे थेन बाय फील्ड में ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें स्पेंट चुनें और फिर से डिसेंडिंग चुनें
ओक पर क्लिक करें
डेटा शीर्षक स्न के अंदर क्रमबद्ध हो गया है और अवरोही क्रम में
उसी प्रकार से हम डेटाबेस में अन्य ऑपरेशंस भी क्रियान्वित कर सकते हैं
क्रम को अन्डू करने के लिए CTRLZ दबाएँ और असली डेटा मिलता है
अब सीखते हैं कि कैल्क में सबटोटल ऑप्शन कैसे इस्तेमाल करें
सबटोटल ऑप्शन आपकी पसंद के गणितीय फंक्शन का इस्तेमाल करके अलग अलग शीर्षकों के अंदर डेटा के कुल जोड़ की गणना करता है
शीर्षक कॉस्ट के अंदर के डेटा का पूर्ण योग पता करें
सबसे पहले रो संख्या 8 की एंट्री को मिटाएँ
स्न से अकाउंट तक सभी डेटा को एक साथ चुनें
अगला मेन्यू बार से दाता और सबटोटल्स पर क्लिक करें
सबटोटल्स डायलॉग बॉक्स जो प्रदर्शित होता है उसमें ग्रुप बाय फील्ड से स्न चुनें
यह डेटा को सीरियल नंबर से वर्गीकरण करता है
अगला कैल्कुलेट सबटोटल्स फोर फील्ड में कॉस्ट ऑप्शन पर क्लिक करें
यह इसके अंदर की सभी एंट्रीस के जोड़ की गणना करेगा
उसे फंक्शन फील्ड के नीचे सुम चुनें और ओक पर क्लिक करें
ध्यान दें कि कॉस्ट्स शीर्षक के अंदर की एंट्रीस का ग्रैंड टोटल स्प्रेडशीट पर प्रदर्शित होता है
यहाँ शीट के बायीं तरफ तीन नये टैब्स हैं 1 2 और 3 यह टैब्स डेटा के तीन अलग अलग व्यू देते हैं
टैब 1 पर क्लिक करें
ध्यान दें कि कॉस्ट्स के अंदर डेटा का केवल कुल जोड़ प्रदर्शित होता है
टैब 2 पर क्लिक करें
कॉस्ट्स में डेटा और साथ ही कुल जोड़ प्रदर्शित होता है
अब टैब 3 पर क्लिक करें
हमें कॉस्ट्स के अंदर डेटा के कुल जोड़ के साथ शीट का विस्तृत व्यू मिलता है
इस फाइल को बंद करें
बदलावों को सेव या डिस्कार्ड करने के लिए सूचना के साथ एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
डिस्कार्ड पर क्लिक करें
अब इस फाइल को फिर से खोलें
अब लिबर ऑफिस कैल्क में वैलिडिटी ऑप्शन के बारे में सीखते हैं
वैलिडिटी ऑप्शन स्प्रेडशीट में डेटा को मान्य करता है
यह स्प्रेडशीट में चुनित सेल्स के लिए वैलिडेशन रूल्स उल्लिखित करके कर सकते हैं
उदाहरणस्वरुप personal finance trackerओडीएस फाइल में हम वैलिडेशन का इस्तेमाल करके चीज़ों के भुगतान के तरीके को उल्लेख कर सकते हैं
अब शीर्षक डेट और उसके कंटेंट को डिलीट करें
शीर्षक रिसीव्ड के आगे मोडे ओएफ पेमेंट के लिए शीर्षक m o प दें
शीर्षक m o प के नीचे शीर्षक आईटीईएमएस में डेटा एंट्रीस के लिए मोडे ओएफ पेमेंट्स को दर्शाने के लिए सेल्स का उपयोग किया जा सकता है
वे हैं सैलरी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और अन्य घटक
अब शीर्षक m o प के ठीक नीचे खाली सेल पर क्लिक करें
इसमें घटक सैलरी के लिए मोड ऑफ पेमेंट होगा
अब मेन्यू बार से दाता और वैलिडिटी पर क्लिक करें
वैलिडिटी डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
क्राइटेरिया टैब पर क्लिक करें
एलो फील्ड ड्रॉप डाउन से लिस्ट पर क्लिक करें
एंट्रीज बॉक्स पॉप अप होता है
चुनित सेल को वैलिडेट करने पर जो ऑप्शन्स प्रदर्शित होते हैं उन्हें प्रविष्ट करें
पहले मोड ऑफ़ पेमेंट के लिए इन कैश टाइप करें और फिर कीबोर्ड से Enter की दबाएँ
इसके बाद दूसरे मोड ऑफ़ पेमेंट के लिए डिमांड ड्राफ्ट टाइप करें
ओक पर क्लिक करें
चुनित सेल्स वैलिडेटेट हैं
अब साथ में प्रदर्शित हो रहे डाउन एरो पर क्लिक करें
क्या आप ऑप्शन्स देख सकते हैं जिन्हें हमने एंट्रीज बॉक्स में मोड ऑफ़ पेमेंट्स के रूप में प्रविष्ट किया है
नीचे सेल्स को वैलिडेट करने के लिए सबसे पहले टूलबार में फॉर्मेट पेंटब्रश ऑप्शन पर क्लिक करें
फिर वैलिडेटेड सेल के नीचे सेल्स को बायाँ माउस बटन दबाकर और सेल्स के साथ ड्रैग करके चुनें
अब माउस बटन छोड़ दें
सभी चुनित सेल्स उसी प्रकार से वैलिडेट हो गये हैं
अब शीर्षक m o प के ठीक नीचे सेल पर क्लिक करें और फिर डाउन एरो पर क्लिक करें
मोड ऑफ़ पेमेंट के दोनों ऑप्शन्स प्रदर्शित होते हैं
इन कैश ऑप्शन चुनें
उसी प्रकार से किये गये मोड ऑफ़ पेमेंट के अनुसार प्रत्येक वैलिडेटेड सेल्स में आप कैश या डिमांड ड्राफ्ट चुन सकते हैं
इसी के साथ हम लिबर ऑफिस कैल्क पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आ चुके हैं
संक्षेप में हमने सीखा कि कैसे पासवर्ड एक स्प्रेडशीट की सुरक्षा करता है पासवर्ड एक स्प्रेडशीट में एक अकेली शीट या एक टैब की सुरक्षा करता है
डेटाबेस के लिए रेंजेस निर्धारित करें
सब टोटल ऑप्शन इस्तेमाल करें
सेल्स को वैलिडेट करें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम
स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाती हैं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
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें contactspoken हाइफेन tutorialओआरजी पर लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी के लिए उपलब्ध लिंक पर संपर्क करें spoken हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो मैं रवि कुमार आई आई टी मुंबई की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद